जिसके नीचे सिटी स्टाइल एक कपड़े की भी शॉप है।

मुझे यहाँ पर एक कॉलेज दिखाई दे रहा है जिसका नाम है एस.एम. कॉलेज हाजीपुर।

और इसमें से एक बाइक भी गुजर रही है जिसमें एक पीछे एक औरत साडी पहन कर बैठी है |

मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है की सफेद और नीले कलर के --

अ मुझे यहाँ पर एक जेंट्स ब्यूटी पार्लर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है लोकप्रिय हेयर कटिंग सैलून .

मुझे यहां पर ए-एक जगह दिखाई दे रही है जिसमें चारों तरफ हरा-भरा अ दिखाई दे रहा है इसमें बीच में पानी भरा हुआ है।

और नीचे उसमें नारंगी और सफेद कलर से कुछ बना हुआ है पीछे एक और मुझे हरे कलर का झाड़ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर नील हरे कलर की कुछ मेट भी बिछी चटाई बिछी हुई है और --

एक टैम्पू जा रहा है बाइक जा रहा है एक आदमी जो पैदल जा रहा है और पीछे साइड में बोर्ड भी लगे हुए हैं लम्बे-लम्बे पेड़ भी खड़े हुए है।

एक अ कॉफी की मशीन भी रखी हुई है | पीछे बियर बोतल भी रखी हुई है | फ्रिज दिखाई दे रहा है |